--प्रकार की खिड़कियां रखीं हुई है जो की दिखने मे बोहोत ही सुंदर लग रही है और वहा पर कुछ फुला फूल भी लगे हुए दिखाई दे रहें है जो की फूलो से सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

खुले दरवाजे बने हुए हैं उसमे वहाँ पर उसके अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं म वहाँ पर हरे-भरे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और आसमान भी दिख--